ये पिक्चर किसी के घर की पिक्चर है जिसमें--

कुर्सियां रखी हुईं हैं बहुत ही बड़ी खुली जगह पे।

ये जो पिक्चर है ये शादी की पिक्चर है।

ये जो पिक्चर है एक बिल्डिंग की पिक्चर है जोकि अभी बनाई जा रही है।

पिक्चर है जिसमें एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ है बहुत से बच्चे इकट्ठे--

कलड़ो पे कच्चा रास्ता बना हुआ--